मंदिर के सामने नीली नीनी लाइट लगी हुई दिखाई दे रही। नीचे और एक आ --

लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और रेल की पटरी पर एक लड़का जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसने नीली कलर की टी-शर्ट --

बाजू मैं लिखा हुआ ए_एस_एच_ओ --

उसमे रेड कलर के दिल बने हुए है और लकडियो मैं दिल खुरसे हुए हैं रेड कलर के।

और एक खुर्सी रखी हुई दिखाई दे रही है बोरिया रखी हुई दिखाई दे रही है ऊपर --

इस इमेज में मुझे एक तलाशा दिखाई दे रहा है। उसमे बहुत सारा पानी भरा हुआ है।

इस इमेज मैं मुझे एक दुकान दिखाई दे रही है उसके ऊपर लिखा हुआ है म्यूज़िक --

मस्जिद बनी हुई दिखाई दे रही है और छोटे-छोटे दो लैंप लगे हुए दिखाई दे रहे हैं व्हाइट कलर के --